कैनर है और यहां पे लोग स्कैन करके पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे बहोत सारे बैंक से लिंक किए हुए और ऑनलाइन लिंक की गी हुई सारे नजर आ रही है।

ये गाय की जो कलर है वो दो कलर में कंबाइंड है। ज्यादातर कलर ब्लैक है और थोड़ा सा व्हाइट कलर है और इनके जो पैर है वो भी पूरा ही व्हाइट नजर आ रही हैं और नीचे थोड़ी सी चीजें भी पड़ी --

और उसपे बहोत सारी चीजें पॉलिथीन के अंदर पैक करके उन लोगों को वो गिर ना जाए इसके वजह से उन लोगों को एक एक लेंथ में एक एक तरीके की चीजों को एक एक जगह बांध के रखी गई है जो कि इलास्टिक की रस्सी यूज़ की गई है।

पा रहे हैं ये एक जगह है जहां पे आ बोहोत ही पुरानी और चिड़िया को रखा जाता है और यहां पे इन लोगों को खाने पीने का और रहने का पूरा ही बंदोबस्त किया जाता है।